यह एक पोखर है यहाँ पे लोग बोटिंग करने आते हैं और यहाँ पे मछुआरा मछली पकड़ने आते है और इसमें मछली डालते हैं ताकि बड़ा होए और पकड़ के मछली मे डाले और यहाँ पे सभी लोग पली परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं मछली पकड़ने के लिए।